और सामने तीन चार खिड़कियां और बाहर की तरफ सीढ़ी भी नजर आ रही हैं।

यहां पर कुछ लोग अपनी गाड़ियों में पेट्रोल भराते हुए नजर आ रहे हैं।

और नीचे कुछ सामान भी पड़ा हुआ--

इस इमेज में देखिएगा यहां पर एक पहाड़ दिखाई दे रहा है जहां पर एक आदमी खड़ा हुआ नजर आ रहा है।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर दो बिल्डिंगे के दिखाई दे रही हैं और सामने एक बड़ा सा मैदान भी नजर आ रहा है।

इस इमेज में दिखेगा यहां पर एक रास्ता दिखाई दे रहा है और सामने बिल्डिंग और कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर एक कार खड़ी हुई है और साइड में एक लड़का भी नजर आ रहा है।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर एक गेट दिखाई दे रहा है जो लाइटों से सजा हुआ नजर आ रहा हैं।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर एक हॉल दिखाई दे रहा है और नीचे फर्श पर बहुत ही सुंदर सी डिजाइन नजर आ रही है।

इस इमेज में देखियेगा यहां पर एक बड़ा सा गेट दिखाई दे रहा है और अंदर बड़ी सी इमारत नजर आ रही है।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

इस इमेज में देखिएगा यहां पर एक हॉल दिखाई दे रहा है जहां पर देखिएगा कुछ ज्वेलरी नजर आ रही हैं।